और बॉलर बोलिंग फेंकने के लिए तैयार है बैट्समैन मारने --

देख सकते है ये पूल से पानी जा रहा है।